दुकान है।

और लोग लक्ष्मी जी को गणेश जी को लेके जाते हैं। बोहत ही अच्छा देखने में लग रहा --.

बाहर बोहुत सारा बेड है। ये मरीज़ कुछ-कुछ बेड पर बैठे हुए हैं और जिसका ईलाज चल रहा है।

दो और दो चार एक पांच गो लड़का एक लड़का इधर है बेंच पर नहा रहा है। लोहा का बेंच है।